तथा इसके हाथ में एक की है व पास ही इसकी माँ खड़ी हुई है जिससे यह हाथों में की दे रहा ऑटो रिक्शा के ऊपर सारथी लिखा हुआ है तथा बगल में एक स्कूटर पार्क है।

एक क्लिनिक है जिसके अंदर एक चेयर पर एक डॉक्टर बैठा हुआ है साइड में बहुत सारे व्यक्ति खड़े हुए हुए है तथा डॉक्टर इन्हे देख रहा है।

यह एक डाकघर है जिसके बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसपे डाकघर लिखा हुआ है।

यह एक ग्राउन्ड है जिसके अंदर एक व्यक्ति लेटा हुआ है तथा दूसरा व्यक्ति इसके पेरो की मसाज कर रहा है जिसने हाथों मे ग्लवस आँखों मे चश्मा पहना हुआ है।